इस फोटो में दिखा रखा है कि यह एक जंगल है और जंगल के बीच में एक रास्ता जा रहा है।

और रास्ते से इधर भी बहुत सारे पेड़ पौधे है और इधर भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

और यहां पर कुछ व्हाइट कलर के पत्थर पड़े हैं।

और यहां पर बहुत सारा सोना भी रखा हुआ है।

इस फोटो में दिखा रखा है कि यह एक अस्पताल है और यहां पर एक बेड भी है।

और यहां पर तीन स्टूल भी रखे हैं और यहां पर एक कुर्सी भी रखी है।

और इन व्यक्तियों के मुंह नहीं दिखा रखे हैं कुछ व्यक्तियों के मुंह दिखा भी रखे हैं।

और यहां पर कुछ बच्चे भी हैं जो की टीचर उनके ऊपर फूल बिखरा रही है।

इस फोटो में दिखा रखा है कि एक सागर रत्ना हॉस्पिटल है।

और यहां पे बीच में एक स्टार भी बना रखा है।

इस फोटो में दिखा रखा है कि यहां पर दो सोफे रखे हुए हैं।

इस फोटो में दिखा रखा है कि यहां पर बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है।

और यहां पर बीच पर झूमर भी लटक रही है और यहां पे दो स्टेज भी रखी हुई है और बहुत सारे पौधे भी रखें हैं।

और बहुत सारे पंखे भी है और यहां पर बहुत सारे कुर्सियां भी रखी हुई है।

और यहां पर मिट्टी भी दिख रही है और बहोत सारे हरे हरे घास भी दिखा रखी है।

इस फोटो में दिखा रखा है कि यह एक एजेंसी है।

और यहां पर एक तार भी पड़ा हुआ है और यहां पर पत्थर लगा हुआ है।

और यहां पर एक पेड़ भी दिखा रखा है बहोत बड़ा।

और इसके ऊपर नीचे कमरे बने हुए हैं।

और इसके बाहर बहोत अच्छी अच्छी हरी हरी घास खड़ी है।

और यहां पर दो छत भी दिखा रखी है एक छत के नीचे बहुत सारे पेट्रोल पंप है और जिसके पास दो बाइक भी खड़ी है।

और यहां पर बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगी हंडिया भी रखी हैं।

इस फोटो में दिखा रखा है कि यह एक लाइन और इस लाइन में बहुत सारे दुकानें है कुछ दुकानें बंद भी है।

इस फोटो में दिखा रखा है कि यहां पर बहोत सारी कारे है।

और एक कार तो कवर से ढक रखी है और यहां पे दो बाइक भी है और यहां पे एक व्यक्ति चल रहा है।

इस फोटो में दिखा रखा है कि यह एक स्कूल है और यहां पर एक बच्चा माइक में कुछ बोल रहा है।

और यहां पर बहुत सारे सोफे भी रखे हुए हैं।

और यहां पर ऊपर की छत में बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

इस फोटो में दिखा रखा है कि यह एक जिम सेंटर है और यहां के छतों में बहुत अच्छी अच्छी लाइटें लगा रखी है और यहां पर बहुत अच्छे गुब्बारे भी लगा रखे है।

इनके ऊपर बहुत सारे फल फ्रूट रखे हुए है।